ऊपर पंखे लगे हुए है और खिड़िकया है जो जो बेड बिछी हुई है कुछ मरीज जो बेड में सोए हुए है और नर्से जो देख रहे है।

एक कपड़े का शोरूम है। जिस कपड़े के शोरूम में काउंटर के पास एक लड़का बैठा हुआ है। उसके अलग बगल समाने रखे हुए हैं। ऊपर लाइट लगी हुई है पंखे लगे हुइ हैं।